शादी का स्टेज बना हुआ है।

यहाँ पे पिंक कलर के पर्दे से सजाया हुआ है लगी है व्हाईट कलर के परदे लगे है रेड कलर की कुर्सी वहाँ पे रखी है और यहाँ पे --

ये एक कार है कार अ शायद जंगल में खराब खड़ी है।